यहाँ बहुत से मुस्लिम बैठे हुए हैं महजिद पर और सब अपने-अपने पूजा कर रहे हैं।

यह एक तालाब पर भी बहुत से पत्थर दिखाए जा रहे है और पेड़-पौधे और तालाब पे चारों साइड ग्रास --

देखिये यह एक ट्रैन है ट्रैन के दूर-दूर तक कुछ पहाड़ दिख रहे हैं और आमने सामने बहुत से घर दिख रहे है।

से लड़कियां और लड़के हैं जिनमें बच्चों सब-सब ड्रंक कर रहे हैं दिखने में बहुत ही अच् --